हरा-हरा पर्दा लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ--

मुझे यहाँ सामने की तरफ कुछ दीवार दिखाई दे रही है जहाँ पर एक शीशा दो शीशे लगे हुए है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए है।

मुझे यहाँ बहुत बड़ा-सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है ओर जहाँ पर लोग यहाँ पर स्पिन कर रहे है यहाँ पर बीच में एक खम्बा खड़ा हुआ है बीच में कुछ--

और जो है निचे की तरफ लोग बैठे हुए है सब्जी को बेचने के लिए कैरेट दिखाई दे छोटी बड़ी बच्चियां दिखाई दे रही है।

यहाँ पर सामने की तरफ एक जंगल सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे अ छोटे-छोटे से हरे-हरे से घास उगे है बड़े-बड़े से पेड़ दिखाई दे रहा है बिच में एक कॉटेज दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक भवन दिखाई दे रहा है जी जिसमे लिखा है तहसील कार्यालय।

का रंग गेरुवा है। किनारे-किनारे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जो की हरे-हरे--

मुझे यहाँ सामने की तरफ एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है यहाँ सीमेंटेड कुछ बैरियर लगाए गए है।

अंदर की तरफ इसके बगल में भी एक आदमी दिखाई दे रहा है किसी शॉप के अंदर।

मुझे सामने की तरफ एक स्टेज सजा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बगल में कुछ लड़किया दिखाई रही है। बगल में एक घर दिखाई दे रहा है। घर की खिड़की दिखाई रही है।

मुझे यहाँ पर लोहै की दाल घुटने की तरह--

और यहाँ पर पार्ले-जी बिस्किट रखा हुआ है बहुत से वेरायटीज के नमकीन रखी हुए है यहाँ पर टॉफी रखी हुई है यहाँ पे जेम्स रखे हुए है।

हरी-हरी परछाई आ रही है उसके सामने गेरुवा रंग का दिखाई दे रहा है उसके सामने बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई रही कुछ बच्चे यहाँ पे मैदान में खेलते हुए दिखाई दे है।

यहाँ पर मुझे सामने की तरफ दो रिक्शे खड़े हुए दिखाई दे रहे है एक रिक्शे का रंग पीला है एक रिक्शे का रंग नीला है सामने--

अ प्लस का निशान बना हुआ है। पीछे की तरफ कुर्सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है। सामने कालीन बिछी हुई है।

सामने की तरफ वाइट कलर ब्लैक बोर्ड लगा है और लाइटे जल रही है यहाँ--

पे-- मे एक यहाँ पर चबूतरा दिखाई दे रहा है बगल में यहाँ पर लोहे का लोहे की छड़ी उपर की तरफ गई हुई है यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान पे--